javaजावा में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में
और कंस्ट्रक्टर को बनाना
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
उबंटु वर्जन 1110 जावा डेवलपमेंट किट 16 और इक्लिप्स 370 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए
इक्लिप्स का उपयोग करके जावा में क्लास का ऑब्जेक्ट और क्लास कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो संबधित ट्यूटोरियल के लिए दर्शाई गयी हमारी वेबसाइट पर जाएँ
httpwwwspoken tutorialओआरजी कंस्ट्रक्टर का उपयोग इंस्टेंस वैरिएबल को इनिशिलाइज करने के लिए किया जाता है
इसे नए ऑब्जेक्ट को बनाते समय कॉल किया जाता है
अब देखेंगे कि जावा में कंस्ट्रक्टर को कैसे परिभाषित करें
अतः इक्लिप्स में मैंने पहले ही एक जावा फाइल studentजावा बना ली है
स्टूडेंट क्लास में हम दो वैरिएबल्स घोषित करेंगे
अतः टाइप करें इंट roll number सेमीकॉलन और स्ट्रिंग nameसेमीकॉलन अब एक मेथड बनाएँ
अतः टाइप करें वॉइड studentDetail कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन roll number फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नामे अब मैन मेथड में हम इस मेथड को कॉल करेंगे
अतः अब एक ऑब्जेक्ट बनाएँ और मेथड कॉल करें
अतः टाइप करें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नाम स्टू इक्वल टो न्यू स्टूडेंट फिर स्टू डॉट मेथड का नाम जो है स्टुडेंटडेटेल प्रोग्राम को सेव और रन करें
हम आउटपुट ज़ेरो और नुल देखते हैं
अतः इंट वैरिएबल का roll number इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो में इनिशिलाइज होता है
और स्ट्रिंग नामे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल में इनिशिलाइज होता है
यदि हम कंस्ट्रक्टर को परिभाषित नहीं करते हैं तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते हैं
इंस्टेंस वैरिएबल्स को उसकी डिफॉल्ट वैल्यू में इनिशिलाइज करता है
अब कंस्ट्रक्टर को परिभाषित करें
अतः टाइप करें स्टूडेंट पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट्स
याद रखें कंस्ट्रक्टर में क्लास नाम की तरह समान नाम होता है जिससे वह संबधित होता है
कंस्ट्रक्टर मेथड्स के समान हैं लेकिन वहाँ कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं
प्रोग्राम को सेव और रन करें
हम समान आउटपुट देखते हैं
ऐसा इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर जिसे हमने परिभाषित किया है वह बिना कंस्ट्रक्टर होने के समान है
लेकिन यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर को परिभाषित किया है
अब अपने वैरिएबल्स को वैल्यू दें
अतः कंस्ट्रक्टर के अंदर टाइप करें roll number इक्वल टो टेन सेमीकॉलन
और नामे इक्वल टो डबल कोट्स में रमन अब प्रोग्राम को सेव और रन करें
हम आउटपुट में देखते हैं कि रोल नंबर टेन और नाम रमन है
अतः कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस फिल्ड को इनिशिलाइज करता है
अब मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच कुछ भिन्नता देखते हैं
कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं है
जबकि मेथड में रिटर्न टाइप है
कंस्ट्रक्टर को न्यू ऑपरेटर का उपयोग करके कॉल किया जाता है
जबकि मेथड को डॉट ऑपरेटर का उपयोग करके कॉल किया जाता है
अतः यह कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच कुछ अंतर थे
अतः इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में
कंस्ट्रक्टर को परिभाषित करना
तथा मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच अंतर
स्व मूल्यांकन के लिए वैरिएबल्स के साथ एम्प्लॉयी क्लास बनाएँ और वैरिएबल्स को प्रदर्शित करने के लिए मेथड बनाएँ
और क्लास एम्प्लॉयी के लिए कंस्ट्रक्टर बनाएँ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
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं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
धन्यवाद